इस चित्र में बहुत हरियाली भी दिख रही है।

यह चित्र एक व्यक्ति का है जो कि फोटो ले रहा है।

इस चित्र में आसपास कई पेड़ पौधे हैं।

इस चित्र में ए_सी फैन लगे हुए हैं।

इस चित्र में कुछ झाडियाँ भी दिख रही हैं।

इस चित्र में बाजू में एक बॉक्सिंग बैग है।

इस चित्र में आप बहुत सारे व्यक्ति को जिम करते हुए देख सकते हैं।

इस चित्र में जिम रूम का कलर सफेद और हरे रंग का है।

ये चित्र एक वाटर पार्क का है।

ये चित्र एक कॉलेज के गेट जैसा लग रहा है।

इस चित्र मे गेट के पीछे पीले और लाल रंग का एक बिल्डिंग भी है।

इस चित्र में बहुत सारे आसपास हरियाली भी है।

इस चित्र में एक बच्चा दाहिनी तरफ देख रहा है।

इस चित्र में आगे की तरफ एक रस्ता भी है।

ये चित्र दुर्गापूजा का पंडाल का द्वार का चित्र है।

इस चित्र में कई लोग अंदर और बाहर की तरफ़ पूजा कर रहे हैं।

इस चित्र में गेट के ठीक पीछे कई सारे स्कूल बस और वैन दिख रही हैं।

इस चित्र में बस के ठीक पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

ये चित्र एक स्कूल का है।

ये चित्र एक घर के अंदर का ऑफिस रूम का है।

इस चित्र में टेबल के ठीक बगल में एक पौधा भी है।

इस चित्र में कई सारे फाइलें और कागज भी रखी हुई हैं।

इस चित्र में कॉम्प्लेक्स का रंग क्रीम कलर का है।

इस चित्र में कुछ व्यक्ति साइकिल लगाकर आपस में बातचीत कर रहे हैं।